ऑटो रिक्शा भी दिखाई दे रहे हैं।

तालाब के किनारे का कई सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं। तालाब के पानी हरे रंग की है।

इस पिक्चर में कई सारे मछलियां दिखाई दे रही है यह किसी मछली बाजार की पिक्चर हैं। इसमें एक आदमी मछलियों को बेचते हुए दिखाई दे रहा है।

उस आदमी के पास एक नीले रंग का बैग भी है। उस आदमी के हाथ में इंचीटेप है।

दुकान में जैसे नील मंजन साबुन पेन --

साबुन मंजन तथा कुछ डब्बों मे सामान रखे गए हैं।

बाइक का कलर साल ओढ़े हुए हैं। वह बस सफेद तथा नीले रंग का है।

लड़की के हाथो में लाल रंग की चूड़ियाँ हैं। कानों में बालियाँ हैं। बालों पर गजरे लगे हुए हैं।